भाषण दे रहा है और इसके पीछे बहुत सारी तस्वीरे बनाई गई है जो की बहुत पुराना है और यह क्रिश्चियन का तस्वीरें हैं।

रोड है जो की स्कूटी चला रहे हैं टोटो चल रहा है बहुत सारा वाहन है गाड़ी --

काफी बहुत सारा चित्रण बने हैं।

क्योंकि नीचे लाल सादा पेंट भी किया है बहुत मस्त लग रहा है।

जो की ए.टी.एम. से पैसा निकाल सकते है।